कुछ लोग उधर बातें कर रहे है कुछ सफाई कर रहे है कुछ झाड़ू लगा रहे है ।

ऊपर थोड़े क्लॉउडी से वेअथेर है कुछ घने-घने से बादल है।

पीछे भी एक अंकल जी खड़े हुए है वहाँ पे एक गाय खड़ी हुई है जहाँ पे एक पौधा लगा है।

ये बंदा एक सैलून में है जिधर फोटो खींच रहा है फोटो में एक पर्स हैं।

जगह पे बहोत सारे फाइले रखी हुई है बंधी रखी है ।

बहार कुछ पौधे रखे हुए है।

पीछे एक मशीन रखी हुई है जिससे सामान उठता है --

सैलून का नाम बाल दाढ़ी ईस्पा एण्ड सैलून ।

बा आजु बाजु पुरे पेड़ ही पेड़ है है साइड से पहाड़ो का व्यू है नीचे एक सा --

जिधर ये एक खेत में है जहाँ पे पानी ही पानी हैं।

ये एक जिम की पिक्चर है जहा पे बहुत सारे ट्रेडमिल रखी हुई ट्रेडमिल --

ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान दुकान है जहां पे इलेक्ट्रिक चीज़े मिलती जैसे की वाशिंग मशीन फ्रिज रखा हुआ हैं।